ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है इधर सामान लग रखा हुआ है।

रंग बिरंगे के समान से सजाया हुआ है बहोत।

जिसमें खाने पीने की पोस्टर लगा हुआ है।

छोटा-छोटा पौधा लगा हुआ है बीच में मस्त रोड है।

सुंदर बढ़िया बढ़िया कलर से बना हुआ है।

बहोत बड़ा नन्दी है आजू बाजू पत्थरों--

यहां पे दिख रहा है जैसे कि कोई पालटी हो रहा है।